एक माता रानी का मूर्ति है औ--

नजर आ री है आस-पास बड़े-बड़े पेड़ हैं और घर के पास बड़े-बड़े पौधे भी नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे सरिया सरिया के रखे हुए हैं।

बोतल में पानी है ऊपर फैन चल रहा है लाइट ल--